कमल अर्थ मोटर्स लिखा हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान के बाहर एक साइकल खड़ी है साइकल जो है लाल रंग की--

साइड पे दो लड़कियां और नाच रही हैं।

कुछ सफेद रंग के कुछ हरे रंग के कुछ--

सामने तीन कुर्सियां लगी हुई है जो सिल्वर रंग की है। उसपे काले रंग की गद्दी रखी हुई है।

बड़ासा है जैसे काई का रंग होता है और सामने एक पेड़ गिरा हुआ है जो दोनों तरफ के--

दो लकड़े हैं जो आपस में फोटो खींच रहे --

एक आदमी साइड से बाहर की ओर आ रहा है और वैन के अपोजिट देख रहा है।

दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है बैनर पे लिखा है शिवा सर्विस सैंटर एंड टायर --

सड़क ग्रे रंग की सड़क के किनारो पर वाइट रंग की दो पट्टियां दिख रही हैं।

शाही पनीर पनीर टिक्का चिकन फ्राइड राइस आलू टिक्की बटर नान और साइड में गू लिखा--

यह एक सब्जी की दुकान लग रही --

यहां पर बहुत साड़ियां कटोरियां और डब्बे रखे हुए हैं।

ज्यादातर डब्बे ऑरेंज रंग के हैं एक डब्बा काले रंग का है।